एक तलाव है तलाव तलाब के बगल में एक बहु-- है।

एक भी आईपी जो बोला जाता है भीआईपी सलून है इसमें अभी फ़िलहाल कोई नही है स्टाफ है और बहुत सुन्दर है

एक कॉलेज है कॉलेज का नाम है एस_एन सिन्हा कॉलेज जहानम कॉलेज के बगल में एक नाला हैं और वहाँ पे है।

एक माकन ठा हुआ है मकान के तामने एक स्टेट बैंक का ए_टी_एम्--

एक माकन है मकान एक बगल में दो दुकान खुला हुआ है एक नगीन पुस्तक भंडार और दूसरा भि नगीने पुस्तक भन्दर भंडार वहाँ पे एक व्यक्ति है।

एक पुल आगे पुल के चारों कचरा भरा हुआ है और पुल के ऊ उठा हुआ--